इस तस्वीर मे एक बड़ा सा पार्क दिखाई दे रहा है यहाँ एक स्विमिंग पूल बना हुआ है।

यहा पे बहुत सारे कपड़े रॅक मे रखे हुए है।

इसके नीचे बहुत से लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है सीढ़िया भी बनी हुई--